इस फोटो पर मुझे एक दुकान के अंदर दिखाई दे रहे हैं जिस पर बहोत सारा अलग अलग सामान रखा हुआ है।

इस फोटो पर मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रही है जिस पर बहुत सारा कॉपी लोग रखा हुआ है और पेंसिल और लोग भी बहुत सारा रखा हुआ है।

पिक्चर पर मुझे एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें दुकान के आगे में बहोत सारा इंसान लोग खड़ा करके भी देख रही है।

घर पूरा ग्रीन कलर पर दिखाई दे रही है जिस पर बरांडा में सफेद कलर की फूल फूलों बहुत सारा दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर पर मुझे एक बरा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आसमान भी पूरा सफेद सफेद से दिखाई मिल पा रहा है --

बहुत बड़ा बड़ा घास लोग भी दिखाई दे रहा है।

इस घर में परदा लगाया हुआ है।

इस पिक्चर पर मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।

इसमें राउंड करके भी आईना भी बहुत सारा लगाया हुआ है।

नीचे पर भी दो कलर की कारपेट लगाया हुआ है एक ग्रीन और एक ब्लैक कलर का।

आगे में भी एक काठ से बनाई हुआ गेट दिखाई दे रही है जिसमें एक छोटा सा लाइट बल्ब लगाया हुआ है।

इस पिक्चर पर मुझे एक लंबा सा ब्रिज दिखाई दे रही है।

नीचे में भी बहोत बरा लुक पानी दिखाई दे पा रहा है।

किनार किनार में बहुत सारा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर पर।

इन लोगों ने अलग अलग कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

लोगों ने एक आग जलाया हुआ एक लाठी पकड़कर के भी है।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

यहां पे बैग में बहुत सारा प्लास्टिक से कवर करके रखा हुआ है।